meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
आज के tutorial में मैंने आपसे प्रश्न और उत्तर edition का वादा किया था अतः अब कुछ ख़बर के साथ शुरू करती हूँ
मैंने आपको पहले ही gimpusers com के बारे में जानकारी दी है और उनके पास gimp के video podcast के बारे में एक बहुत बड़ी ख़बर है लेकिन मुझे लगता है आप पहले ही video podcast के बारे में जानते हैं
अतः अब download पेज पर जाती हूँ और यहाँ आप gimp 240 release कैंडिडेट देखते हैं और यह windows के लिए उपलब्ध है और मुझे लगता है apple macintosh के लिए भी उपलब्ध है और मेरा systems छोड़कर ज़्यातार linux systems के लिए इन source है
क्योंकि ubuntu कुछ libraries जिनकी ज़रुरत है को सँभालने में सक्षम नहीं है
अतः gimp 240 यहाँ है और जब आप gimpusers com पर हैं तो screen पर इस क्षेत्र को देखें
यह दो mailing सूचियों का आइना है जो gimp के बारे में बहुत सी जानकारी देता है
पहली gimp user mailing सूची है और मैं आपको उसे पढ़ने की सलाह देती हूँ
gimp developer सूची मेरी सोच से ऊपर है और शायद आपकी सोच से भी ऊपर है
और यहाँ एक चर्चा है जो एक प्रश्न का उत्तर देती है और मुझे उसके बारे में नहीं पता था
अब यहाँ इसे देखते हैं
यहाँ पहला प्रश्न alex burs alex burs के द्वारा पूछा गया है और उसने पूछा: sample point टैब ने the किया
और मैं उस प्रश्न के बारे में नहीं जानती थी
लेकिन मैं alex को जानती थी क्योंकि उसने आपके लिए files प्रदान करने में मेरी मदद की और मेरे लिए google site set अप करने की कोशिश की
यहाँ tim jedlicka tim jedlicka से उत्तर आया और मैं tim को भी जानती हूँ क्योंकि tim के पास internet में एक बहुत बड़ा server और internet से गुज़रता एक बड़ा pipe है और जो files मैं यहाँ प्रयोग करती हूँ वे आप भी download कर सकें हम इसको संभव बनाने की कोशिश में हैं
मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी और बस meetthegimp org पर block में देखें और देखें यदि आप download icon ढूँढते हैं
यहाँ tim alex के प्रश्न का उत्तर देता है
और यहाँ मैं आप दोनों को इस प्रश्न और उत्तर वार्तालाप के लिए धन्यवाद देती हूँ
tim लिखता है कि sample points guide की तरह ही बनाये जाते हैं यह छोड़कर कि आपको ctrl की दबाकर रखनी है और आप जिस को sample करना चाहते हैं उस point को खींचते हुए measurement bar में cursor रखकर और ctrl की को पकड़कर sample point बना सकते हैं
और आगे कुछ और प्रश्न हैं लेकिन मैं उनको बाद में देखूँगी
मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था और मुझे इसकी कोशिश करनी है
ऐसा करने के लिए मैंने gimp शुरू किया और image load किया जो my ship in the fog की तरह जाना जायेगा
अब मैं बायीं तरफ ruler पर जाऊँगी ctrl की दबाउंगी और ruler को बाहर खींचूँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ mouse का cursor ऑय dropper में बदल गया है और मुझे एक के बजाय दो लाइनें मिलती हैं
button mouse button और ctrl की को छोड़ें और आपको इस पर number 1 के साथ एक point मिलता है
और जब मैं mouse button दबाकर और ctrl की दबाये बिना ruler को बाहर की तरफ खींचती हूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ एक line मिलती है जो इस पर चीज़ों को समायोजित करने में प्रयोग होती है
अब ऊपर की तरफ ruler से वही प्रक्रिया करने का प्रयास करते हैं
मैं ctrl की और mouse button दबाती हूँ और ruler को नीचे खींचती हूँ और इसे यहाँ छोड़ती हूँ
अतः यहाँ मेरे पास number 2 है और number 1 पहले से ही वहाँ है लेकिन मैं यहाँ कोई dialog नहीं देख सकती
अतः tool विकल्पों पर click करें और tool बॉक्स से color picker चुनें लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखता
लेकिन files में उल्लिखित एक dialog था अतः मैं file पर click करती हूँ dialogs पर जाती हूँ और यहाँ sample points नामक एक dialog है
जब आप इस पर click करते हैं तो आपको यहाँ 1 और 2 के लिए sample points मिलते हैं
और यह image में भिन्न points के बारे में रंग जानकारी प्राप्त करने का एक method है
और अब मुझे रंग जानकारी प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका पता चलता है
मैं यहाँ pixel से rgb में बदल सकती हूँ और मुझे red green blue और alpha के लिए values प्रतिशत में मिलती हैं
यहाँ pixel के साथ आप रंगों की वास्तविक संख्यात्मक value देखते हैं और जब rgb चयनित है तो आप यहाँ html के लिए hex code देखते हैं और मैं rgb को hsv color model में या cmyk color model में बदल सकती हूँ और उसे बाद में cover करुँगी
अगला प्रश्न भी color और color picker से सम्बंधित है
मैंने ship in the fog के मेरे podcast में उल्लिखित कर दिया था कि आप color picker ले सकते हैं और image के रंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और glulio glulio पूछता है कि यहाँ परिणामी रंग के रंग की जानकारी कैसे प्राप्त होती है केवल एक layer के रंग की जानकारी नहीं
इसका एक कारण है कि आपने बस देखा लेकिन वहाँ भी अलग रास्ता है
मैंने वो color picker चुन लिया है और जब मैं shift दबाती हूँ और image में click करती हूँ तो मुझे मौजूदा रंग जानकारी मिलती है और आप देखते हैं यहाँ वो जहाज है वो पेड़ सफ़ेद हैं और आकाश भी है जो बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं है
और यह इसलिए क्योंकि मैंने सफ़ेद background चुना है
अतः मैं layers dialog पर जाती हूँ और इसे dialog में मूल background layer में बदलती हूँ और आप देखते हैं कि आप जो screen पर देखते हैं यह उससे बिल्कुल अलग है
layers dialog में sample merged नामक एक dialog है और जब आप उसे सक्रिय करते हैं तो आपको सारी स्टैक layers का परिणाम मिलता है और sample merged के साथ आप देखते हैं कि color picker में हर समय foreground रंग बदलता रहता है
sample merged सक्रिय होने के साथ आपको सारी layers के परिणाम मिलते हैं
जब आप sample merged विकल्प निष्क्रिय करते हैं तो आपको सक्रिय layer से सिर्फ रंग की जानकारी ही मिलती है और मैं आपको बताना भूल गयी कि पिछले show में और जब आप नीली layer चुनते हैं तो आपको नीले रंग की जानकारी मिलती है
अतः वापस जाएँ sample merged चुनें और आपको सारी layers की जानकारी मिलती है
यहाँ sample average नामक एक अन्य विकल्प है और जब आप इसे चुनते हैं तो आपको एक बड़ा color picker और उस क्षेत्र में सारे pixels का average मिलता है
यह कोलाहलपूर्ण image के लिए रंग की जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा विकल्प है जहाँ आपके पास single pixels के बीच बड़ा अंतर है
glulio के पास gimp के लिए एक अन्य सलाह है
अगर आप file नेम की तरह न केवल xcf लेकिन xcf pz2 या xcf bz2 प्रयोग करते हैं तो gimp image को compresses यानी छोटा करता है और आपको एक छोटे आकर की file मिलती है
मैं नहीं जानती कि यह windows पर कार्य करता है या नहीं और आपको उसका प्रयास करना है
शायद windows पर यह कार्य करता है अगर आप file को xcf zip name देते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ठीक है या नहीं
शायद किसी व्यक्ति को इसका प्रयास करना चाहिए और blog पर post करना चाहिए
एक अन्य प्रश्न dmitry dmitry की तरफ से आता है
वो पूछता है कि he मैं भिन्न codec की कोशिश करके video की quality को बड़ा सकता he
लेकिन मुझे मुफ़्त version में लिनक्स के लिए यह codec h 264 नहीं मिला
एक commercial version है लेकिन यह there लिए बहुत कीमती है
यह this एक शौक है और मैं चीज़ों को अपलोड करने के लिए भुगतान करती हूँ और यह बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं यहाँ इस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहती
लेकिन मेरे पास आपके लिए एक quality प्रश्न है
मैं इसे 800/600 pixels में recording कर रही हूँ और इसे 640/480 तक कम करती हूँ बस इसलिए क्योंकि हर कोई यह करता है और इस तरह यह apple tv और अन्य पर कार्य करता है
आपके लिए मेरा प्रश्न है कि क्या आप 800/600 वाली my file को वरीयता देते हैं
image बिल्कुल साफ़ है और आप इसे बेहतर देख सकते हैं
files थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ जो लोग हैं who वास्तव में यह बड़ी files नहीं देख सकते हैं
मैं एक test फाइल 800/600 में बनाऊँगी और इसे upload करुँगी संभवतः आप इसकी कोशिश कर सकते हैं और मुझे कुछ फीडबैक दें
मैं यहाँ rodrigo rodrigo की अगली टिप्पणी से बहुत खुश he जो कहता है कि who अपने graphic कार्य के लिए photoshop की बजाय gimp लेने की सोच रहा है
मुझे vitaly vitaly से email के द्वारा एक प्रश्न मिला जिसमे वह पूछता है कि क्या बिना कुछ ख़राब किये कर्व tool उपयोग करने का कोई और तरीका है
इस प्रश्न का उत्तर है नहीं gimp में नहीं है
photoshop इस समायोजन layer के साथ यह कर सकता है और बहुत से gimp programmers हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं और इसे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं
लेकिन अब तक अगर आप अपने रंगों को levels tool के साथ बदलते हैं यह इस तरह से होता है कि आप अपना काम अनडू नहीं कर सकते सारी steps को अनडू करने के बाद अपने उसके बाद किया
एक अन्य प्रश्न dudley dudley की तरफ से है और ऊपरी तल से यहाँ मेरे podcast तक उसने सलाह दीं और उसने अपने computer पर gimp 2217 संस्थापित किया और मैं उसे 23 या 24 released कैंडिडेट की सलाह दूंगी क्योंकि वे 22 श्रेणी से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं
और वो नौसिखिया से विशेषज्ञ तक akkana peck akkana peck द्वारा शुरूआती gimp की किताब के बारे में पूछ रहा है और मेरे पास यह किताब है
यह वास्तव में अच्छा है अगर आप gimp के साथ शुरू कर रहे हैं या आपके पास थोड़ी सी जानकारी है तो यह बहुत अच्छी किताब है और यह एक प्रायोगिक किताब है
और मैं वास्तव में उस किताब की सलाह दे सकती हूँ
अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं तो मैं block में एक link रखूँगी जहाँ आप offer के द्वारा इस किताब को खरीद सकते हैं और दुकान के मालिक को उससे कुछ पैसा मिलता है
कल जब गर्मियों की छुट्टी के बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया तो मुझे एक बुरा झटका लगा और वो काफी shocking होना चाहिए लेकिन मैंने internet explorer में windows computer के साथ meet द gimp block पहली बार देखा
और मुझे वास्तव में झटका लगा क्योंकि सारी images बड़ी हो गयी थीं और कुछ भी frames में फिट नहीं हो रहा था इत्यादि
show में आख़िरी चीज़ मेरे पास आपके लिए एक link सलाह है
podcast network photo podcast के लिए एक बड़ा source है और मैं पहले से ही सदस्य हूँ लेकिन मैं website पर नहीं हूँ
website देखें podcast network के सदस्यों द्वारा बनाया गया एक podcast है और जिसे focus ring कहते हैं और आज ही episode 8 आया
और अंततः यहाँ बायीं तरफ meet द gimp सामने आएगा
क्या आप meet द gimp को फ़ैलाने में मेरी मदद करना चाहेंगे और अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें और अधिक जानकारी